मुझे बरसात का अट्मॉस्फियर दिख रहा है काफी जनों ने छाता लेकर चलते हुए दिख रहे हैं काफी स सारे रोड पे बंदे जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यूनिफार्म पहना है डॉक्टर की शर्ट वाइट कलर की और कुर्ता ब्लू कलर का और बॉटम वाइट कलर की और वो --

मुझे यहां लाइटिंग वाला बैनर दिख रहा है कॉफी उम्म बन एंड टी ।

ब्राउन प्रिंटेड मटके ढक्कन वाले नल वाले और उसी के बाजू में फ्लावर्स के पोर्ट भी पड़े हैं जो अलग अलग वेरायटीज के हैं।

एक एक और एक बीच में से लकड़ा रखा हुआ है उससे आते हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ गर्ल्स खड़ी हैं घूमने की जगह जैसा लग रहा है और वो कच्ची सी बनी हुई है अभी और और उसमें तीन चार लड़कियाँ घूमते हुए नजर आ रही है।